दरवाजे पर बहोत सारे पेंपलेट हैं। ये एक इंस्टीट्यूट है। यहां पे आई_एस वगैरह की तैयारी होती है।

काफी सफाई है ये रूम रेंट का है।

बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार के कार्टून का पेंटिंग है।

खेल रहे हैं और बारिश का पानी--

पीछे और भी मकान हैं।

यहां पर बहोत सारे आदमी इकट्ठा हैं यहाँ कोई प्रोग्राम है।

बहुत सारी कुर्सियां हैं पेड़ है।

यह एक चर्च है जिसमें जीसस का साइन है।

यहां पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें है और बहुत सारी हरियाली है।

और एक आदमी खाना खा रहा है।

यहां बहोत सारे पैसेंजर है।

यहां बड़े बड़े पत्थर हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं।

हैं ये पंखे अक्सर गर्मियों में इस्तेमाल--

यहां पर दो बसे है।

ऊपर खुला नीला आसमान है।

यहां पर काफी बड़ा गार्डन है।

जिसमें गुब्बारे लगे हैं यहां पर जेंट्स के--

जैसे जींस की पैंट और शर्ट है।

यहां पर पुराना सा घर है।

यहां पर बड़ा सा--

और लाल रंग की गाड़ी है।